उस रास्ते पर कुछ महिलाएँ और कुछ बच्चे चल रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग भी दिख रहे है।

यह एक झरने का चित्र है।

प्रीमियम एंड ग्लास वर्क्स की शॉप है।

फूलों की मालाएँ टंगी हुई हैं कुछ सफेद रंग की हैं और कुछ ऑरेंज रंग की हैं।

कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रास भी दिख रही है।

यह एक बस स्टैंड का चित्र है जिसमें एक बस खड़ी हुई है।

फिश एक्वेरियम की शॉप है जिसका नाम मरीन एक्वेरियम है।

इसमें एक गेट भी दिख रहा है।

एक घड़ी भी दीवार पर लगी हुई है।

जिसमें एक महिला भगवान के दर्शन करती हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें अलग अलग कलर की बहुत सारी बल्टियां पड़ी हुई हैं।

और बहुत सारे लोग भी हैं।

यह एक मेले का चित्र हैं।

बहोत सारे लोग दिख रहे है और एक पेड़ भी दिख रहा--

बहुत सारी चेयर्स भी रखी हुई है।

यह चित्र किसी कस्बे का चित्र है।

यह चित्र एक बेडरूम का चित्र है जिसमें एक बैग रखा हुआ है।

दो सोफे भी रखे हुए हैं।

यह एक बगीचे का चित्र है।

जिसका नाम हिमालय ट्रांसपोर्ट कंपनी है।

इसमें ऊपर आसमान और साइड में पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक टेबल भी रखा हुआ है।

जिसे फूलों की मालाओं से सजाया गया है।

यह चित्र किसी उद्घाटन का चित्र हैं।

जिसे बलूंस से सजाया गया है।

कुछ चिप्स के पैकेट्स टंगे हुए हैं।